यह बोरा वाला फैक्ट्री है यहाँ पर बोरा बनाए जाते हैं दो लेडिस बना रही हैं पीला कलर का बोरा भी है वाइट उजला भी है डब्बे भी हैं रंग-बिरंग के।